ऊपर सफेद और काले रंग के बादल भी है।

हमने एक सफेद रंग का बस पर बहोत सारे लोग ऊपर चढ़े हुए हैं।

यह तस्वीर एक मैदान की है यहां पर बहुत सारे गाड़ियां लगी हुई है।

नीला रंग का टंकी भी है नीचे गाड़ियां भी लगी हुई है।

कित्सा केंद्र यहां का दरवाजा शीशा का है।

यह तस्वीर एक शोरूम की है जिसका रंग सफेद और लाल है।

इनका रंग नीला है सामने बहुत सारे डिब्बे रखे हुए हैं।

यहा पे बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ है।

सामने एक आदमी पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट पहने खड़ा है।

यह तस्वीर एक होटल की है इस होटल का रंग लाइट ग्रीन और वाइट है।

यह तस्वीर एक होटल की है इस होटल का रंग सफेद है।

फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे लोहे के मशीन भी है।

यह तस्वीर एक सड़क की है यहाँ पर बहुत सारे लोग भी खड़े हैं।

यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए भी हैं यहां पर कुछ लोग खड़े हुए भी हैं।

यह तस्वीर एक सड़क की है यहां पर बहुत सारे पत्थर भी गिरे हुए हैं।

यहां साइकिलें भी लगी हुई है अगल बगल बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं।

इनका रंग ब्लैक है और सामान लोहे के हैं।